यहां पर पीछे की तरफ दीवार पर पीला रंग करा हुआ है।

एक डंडा लगा हुआ है उस पर एक झंडा लगा हुआ है।

बाहर की तरफ एक बैनर लगा है ऊपर इस पर।

कुछ लोग बाइक पर खड़े हैं।

एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर है इसने लाल रंग की शर्ट पहने हुए.

ये एक पोस्ट ऑफिस है पीछे की तरफ--

और पास में दो पेड़ हैं जिन पर लाल रंग से करा हुआ है।

और ट्रक के नीचे की तरफ दूसरी साइड --

बंडर के ऊपर घास उगी हुई है।

और आसपास में नीचे लोग खड़े हैं।

पेंसिल बॉक्स है बुक्स हैं और ऊपर की तरफ फ्लाइट भी--

सामान रखा हुआ है साइड में एक टेबल है।

यूनिवर्सिटी बाहर से पूरे लाल रंग की है।

उसके बगल में ही पतंजलि बाबा की फोटो लगी है।

और ऑरेंज कलर का उन्होंने अंगोछा ओढ़ रखा है।

भी नीचे घास है और कुछ सुंदर- सुंदर अलग-अलग तरह के पौधे नजर आ रहे हैं।

ये एक छोटे हॉस्पिटल का वीडियो है यहां पर--

और जो डॉक्टर है इसने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है।

ये एक पानी वाली जगह है छोटा समुंद्र सा--

इसकी चौच भी बहुत लंबी और पीले रंग की है।

औरबा हसाम बाहर की तरफ एक नीले रंग की--

सफेद है चौच इनकी लाल रंग की है।

सामान है और कुछ छोटी-छोटी डब्बियां भी रखी हुई हैं।

इसमे पुतलों ने हरे रंग का ड्रेस पहना हुआ है।

दूसरी तरफ कुछ अलग-अलग दुकानें भी है यहां पर।

कटाई लगी हुई है यहां पर कुछ सॉफ्टाई भी--

यह है एक कॉफी शॉप है यहां पर टेबल लगी हुई है उस पर एक ट्रे रखी है।

ट्रे में दो कॉफी के गिलास रखे हुए हैं दो कुर्सियां भी रखी हुई हैं पीछे की तरफ।

ले रखा है। कुछ बिस्कुट के पैकेट्स भी रखे हैं।

जो पिलर है उन पर ऑरेंज कलर वाइट कलर और ग्रे कलर कर रखा है।

दीवार पर कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं।